यह एक मॉल दिखाई दे रहा है मॉल में बहुत सारी--

और यहां पे बहोत सारे नेकलेस और इयरिंग्स दिख रहे है।

और काउंटर दिख रहा है काउंटर में बहुत सामान दि--